और बहुत सारे बोतल एक - एक टेबल पे रखे हुए है और नीचे में कारपेट बिछाया हुआ है।

उस पेड़ की पत्तिया बहोत ही हरे रंग की दिखाई दे रही है वह बगल में पक्खन भी दिख रहे है वह दूर से बहोत बड़े शहर दिखाई पड़ रहा है।